दुकान के ऊपर बड़े-बड़े अक्षरों में राज लक्ष्मी साड़ी शोरूम लिखा हुआ है।

वहाँ हमे दोनों तरफ बड़ी-बड़ी अलग-अलग साइकलें रखी हुई नजर आ रही है।

सारी ही गाड़ियों में यात्रीगण सवार है |

उसी इमारत के दांया और बांया तरफ भी इमारत बना है।

वहां पे बहुत सारी कुर्सियां तथा मेज है।